मुझे इस चित्र में दिखाई दे रहा हैं ये एक नाश्ते का ठेला है।

बोर्ड पे लिखा है नशा विरोधी संकल्प कार्यक्रम।

मुझे इस फोटो में दिखाई दे रहा है ये एक--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

यह एक ट्रैवलर बस है। जिसमें सिटिंग चेयर्स है।

आदमी एक वाइट शर्ट पेहने गाड़ी के सामने खड़ा है।

रखे हुए हैं साइड में कपड़े डालने की नेट लगी हुई है।